और बिल्डिंग मै काफी सारी खिड़कियां है बड़ा सा दरवाजा लगा है व्हाइट कलर का।

यह एक पहाड़ी इलाका है जहाँ को ताज़ा पानी भरा हुआ है। बगल में पेड़-पौधे लगे हुए हैं। यह जगह ग्रीन हेगा ऊपर साइड में कुछ चट्टानें रखी हुई हैंगी ।

यहाँ एक समुंदर है यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है यह ब्रिज के ऊपर कोई नहीं है ब्रिज वाइट कलर का है और ब्रिज के आगे पेड़ लगे हुए है बहुत सारे पेड़-पौधे वहाँ एक घर भी दिखाई दे रहा है छोटा सा।

यहां एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है जहाँ कुछ बना हुआ हैगा अ बगल में डक वाला व वॉटर स्लाइड रखा हुआ है बच्चो का जहां पर व्हाइट कलर का रखा हुआ हैगा।